जो भी लगा है बहुत महंगा का होगा और बहुत ही अच्छा दिख रहा है बहुत ही लोग है ये भी खड़े है।

और मस्त है ये झरना अच्छा दिख रहा है। ]

बहुत ही अच्छा कसरत कर रहा है इसका टोपी मे बॉय लिखा है बॉय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये कुछ कला अपना दिखा रहा है बहुत ही अच्छा दिखा रहा है जो भी है।

यहाँ एक बिल्डिंग है और एक छोटा बिल्डिंग है जिसमें दोनों में आदमी है और नीचे भी बहुत आदमी है बहुत अच्छा लग रहा हैं दिखने के बाद ईसको।